और दुकान का मालिक भी दुकान में बैठा हुआ है। .>

और ये सभी पेड़-पौधे अलग-अलग किस्म व प्रजाति के हैं।

रंग के कपड़ों से बनाया गया है जिसमें अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं।

और भीं लगा रखा रखा है जींस पर। अने --

यह दृश्य एक बैंक का है और बैंक के अंदर बैंक के कर्मचारी अपने कस्टमर --

बैनर लगाए गए हैं जैसे इंटेक्स जिओ एयरटेल ।

यह दृश्य एक स्टैचू का है और स्टैचू व्हाइट कलर की बनाई गई है और स्टैचू को --